यहाँ पर काफी सारे बड़े-बड़े पत्थर भी हैं। सामने की तरफ हमे टापू भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हमें खिड़की पे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे कपड़े भी टंगे हुए हैं।

यहाँ पर रोड भी है। यहाँ पर लोग घूम रहे हैं दूसरी तरफ ए एक रोड है वहाँ पर भी लोग घूमते हैं।

जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां शादी का माहोल है बहार से यहाँ ज्यादा खास नही सजाया है।

जैसे की आप देख सकते है यहाँ पर हमें फुवारें दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पर ऊपर लेंटर में ही काफी सारी लाइट फिट हैं यहाँ पर काफी सारे कुर्सियां भी रखी हुई है।

यहाँ पर हमें एक गली सी दिखाई दे रही है जो बहुत चौड़ी है | यहाँ पर सामने हमें एक घर दिखाई दे रहा है ।

यहाँ पर काफी साडी ट्रेन आती जाती हैं। यहाँ पर एक साइड से दूसरी साइड जान के लिए उ ट्रेन के ऊपर रास्ता बनाया गया है।